फेविकोल स्टेपलर इत्यादि को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा कर रखा गया है।

पीछे की ओर गुलाबी और लाल रंग की कश्तियां भी दिखाई दे रही हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है।

यह एक खाने की प्लेट का चित्र है इस चित्र में काले रंग की प्लेट में --

एक चम्मच और एक काँटा रखा हुआ है और साथ में कुछ खाद्य-पदार्थ दिखाई दे रहे हैं।

सामने की ओर मेज़ के ऊपर शहनाज के फेशियल का समान रखा हुआ है।

एक तरफ कुछ पेड़ है और वहीं किनारे के ऊपर दो मित्र --

वहीं घर की दीवार के ऊपर बैनर पर --

कुंज किराना जनरल स्टोर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है।

एक आदमी पेट्रोल पंप के आगे से पैदल जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

वेलकम दि स्मार्ट शॉप लिखा हुआ है।